यहाँ गाड़ियों को ऊपर उठाया जा रहा है यहाँ दो गाड़ियाँ हैं एक यहाँ पर अह एक एक यहाँ पर इंसान खड़ा है।

यहाँं पर चार टेंट दिखाई दे रहे हैं। एक गाड़ी दिखाई दे रही है। ऑरेंज किलि कलर की जमीन दिखाई दे रही है। बादल दिखाई दे रहा है।

और बस का खिड़की खुली हुई है और एक दुकान भी है जहाँ साइकिल खड़ी हुई है। रोड है रोड का कलर काला है उस पे पानी गिरा हुआ है बादल दिख रह रहे हैं पेड़ --